सामने एक व्हाइट कलर का दिवाल है।

एक मोटरसाइकिल दिख रहा है।

इसके ऊपर एक गुलाब फूल बना हुआ है।

सामने दो बडा सा गेट दिख रहा है।

सामने बहुत सारे बिल्डिंग दिख रहे हैंजिनके नीचे बहुत सारे मोटरसाइकिल पार्क किया हुआ है।

तामने कुछ खंभे गाढ़े हुए हैं जिसमें सीकड़ से बांध के घेरा हुआ है।

सूखे पेड़ पौधे दिख रहे हैं।

ऊपर बहोत सारे व्हाइट कलर का बल्ब लगाए गए हैं।

बहुत सारी हरे हरे पेड़ पौधे दिख रहे हैं।

इनके बगल में एक लड़का खड़ा है।

जो वाइट कलर का जींस पहना हुआ है ब्लैक कलर का टीशर्ट पहना हुआ है ब्लैक कलर का हाथ में घड़ी पहना हुआ है।

सामने पत्थर के बहोत बड़े बड़े चट्टान दिख रहे हैं।

यहा सामने एक झरना गिरते दिखाई दे रहा है।

सामने एक कमरा दिख रहा है।

ऊपर एक लाइट दिख रहा है जो व्हाइट कलर का है।

बगल में बहुत सारे कॉपी किताब दिख रहे--

सिटी फ्रूट्स का सीन है जो एक बोर्ड पर लिखा दिख रहा है।

जिसके ऊपर में एक व्हाइट कलर का बल्ब लगा हुआ है।

आमने कुछ बुक्स दिख रहे हैं।

जिसके ऊपर कुछ कपड़े रखे हुए हैं।

यह एक दुकान का दृश्य है जहां बहुत सारे रैक बनाए गए है।

ऊपर बहुत सारे मूर्ति बनाये गए है।

जहां बहोत सारे राइस बल लगाए गए हैं।

सामने एक डी_जी जनरेटर दिख रहा है।

एक वाइट कलर का बल्ब दिख रहा है।

ये एक तौलिया दिख रहा है।